यह तस्वीर में दिखाई दे रहा है महादेव डेयरी यहां पर हमारे यहां दूध दही छांछ सुद्ध घी पनीर व --